शायद बिरयानी जेसी डिश है कोई और शॉप बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है और लोगो की आवाज आ रही है तो लगी नही है लेकिन ऐसा लग रहा है की शॉप मे लोग आना जाना--

यह एक घर है घर के दायी तरफ हरियाली है बायी तरफ घर के अंदर जाने का प्रवेश द्वार जैसा लग रहा है और एक सीढ़ी है सीढ़ी काफी छोटी है जो की शायद छत तक लग के जा रही है।

यह एक मीठाय की दुकान है इस में अलग अलग प्रकार की मिठाईया जो की डिश मे दिखाई पड़ रही है और बहुत ही सुन्दर दृश्य है।